यहां एक कबोर्ड नजर आ रहा है जिसके अंदर छोटे और बड़े दोनों ही--

खाते बनी हुई है उन खातों में अलग अलग तरीके के--

पर उसमे बहुत सारे जैसे अलग अलग नज़र आरहे है।

यहाँ एक बहोत बड़ा मैदान नज़र आरहा है मैदान के--

इस पार से एक बुल्डोजर नजर आ रहा है जो इस साइड एक बड़ी ही पिलर को टच है।

एक रानी कलर की कुर्ती में एक लेडी खड़ी हुई है और कुछ चिप्स के वेफर्स पैकेट्स नज़र आरहे है।

मंदिर में नीचे बैठे हुए है दो तीन लेडीज खड़ी हुई है।

चार पांच सीट पे काली कुर्सियां लगी हुई है जिस पर कोई भी बैठा हुआ नई है आस पास--

यहाँ एक बहोत बड़ा सा मैदान नज़र आरहा है।

और यहाँ एक गैरेज नज़र आरहे है जिसमे दो--

सफेद कलर की कार नजर आ रही है एक कार ऊपर वॉशिंग के लिए खड़ी हुई है और एक कार नीचे है।

यहाँ एक मैदान नजर आ रहा है उस एक और उस मैदान के पास में एक शॉप नजर आ रही है और शॉप का सटर बंद है।

यह एक आइसक्रीम का स्टॉल नजर आ रहा है जिसमें एक लाल रंग के--

टीशर्ट में एक लड़का कुछ आइसक्रीम बना रहा है जैसे किसी का वो सेल्ल कर रहा हो।

एक अपनी तस्वीर ले रहा है आईने में से देख कर यहाँ से उसके एक हाथ में फ़ोन नज़र आरहा है।

यहाँ एक चर्च की स्कूल नजर आ रही है उसपे उपर प्लस का साइन भी बना हुआ है बाहर से--

दिवार है और उस दिवार को ही लगती एक काले कलर का गेट है।

एक रास्ता जो अंदर की तरफ जा रहा है और आस पास भूरे रंग की मिट्ठी है पीछे से गुलाबी--

पीले रंग की साड़ी पेहने एक लेडी खड़ी हुई है और पीछे कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

इस तस्वीर में एक कैफ़े नज़र आरहा है उस कैफ़े नीचे फर्श लगी हुई है।

यहाँ एक गार्डन जैसा कुछ नीचे नज़र आरहा है जहा नीचे हरयाली है और उसके--

ऊपर तीन सीढिया जैसी बनी हुई है यहाँ पर बहोत सारी लड़किया--

और सबके हाथ में एक पिंक कलर का बॉक्स नज़र आरहा है कुछ बच्चे--

इस पूरे फूलों का डेकोरेशन नजर आ रहा है नीचे एक रेड कलर की कारपेट --

कुछ टॉयज भी रखे हुए है कुछ और चो-तो-चॉकलेट्स भी नज़र आरहे है।

इस तस्वीर में फुटबॉल का ग्राउंड नजर आ रहा है जहां पे नीचे पूरी ग्रीन कलर की कारपेट --

पूरी बॉर्डर पिंक पिंक है कुछ रोशनियाँ भी नज़र आरही है रात का समय है।

इस तस्वीर में एक क्लासरूम नजर आ रहा है जहां पर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है उस चेयर्स पर कुछ स्टूडेंट --

ये वाइट कलर का परदा लगा हुआ है सभी बच्चे अपनी पढाई पर ध्यान दे रहे है।

उस कपड़े के पास खड़ा हुआ है और पीछे से बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है।

जिम में पोधो में पानी भी डाला गया है एक काले कलर का पाइप नज़र आरहा है और एक गाड़ी भी--

इस तस्वीर में कॉलेज कैंपस नजर आ रहा है जहां पर बाइक्स पार्किंग और कार पार्किंग नजर आ रही अलग अलग तरीके के बाइक्स का--

जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस बॉम्बे के पीछे से--

ग्लासेस नज़र आरही है और उसके रिसेप्शन के नीचे एक बाइक खड़ी--

जहां पर वहां बहोत सारियां गाड़ियां रुकी हुई है उस टोल नाके के ऊपर--

येलो कलर के येलो और ब्लैक कलर के लीनिंग्स कुछ साइड से बॉर्डर्स बने हुए है।

एक डिजिटल फ़ोन नज़र आरहा है और बहुत सारे--

नज़र आरही है और हल्की हल्की उस क्लासरूम में अः--

लम्बे दो से तीन बेंच नज़र आरहे है और स्टार्टिंग में छोटे छोटे कुर्सियां भी नज़र आरही है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसकी बिल्डिंग दो पोल लगे हुए है और बाहर--

और इस बिल्डिंग के शीशे पर--

कॉफ़ी का कप नज़र आरहा हैऔर।

अपने कॉफ़ी में रेड कलर है और वाइट कलर का कप है।

इस तस्वीर मे एक कंस्ट्रक्शन काम चालू नज़र आ रहा है जहाँ एक बहुत बड़ा सा खड्डा है उसमे बहुत सारे--

लोकन के रॉट्स खड़े हुए हैं एक कंस्ट्रक्शन --

बेड नजर आ रहे है एक बेड पर व्हाइट कलर की बेडशीट है और एक बेड कर पर--